ये बहौत ही प्रसन्ता का दिवस होता है।

क्रय विक्रय से हमारे देश के आयात और निर्यात में वृद्धि होती है।

इस चित्र में विवाह को प्रदर्शित किया गया है|

सजावट के समान हमारे गृह पर पर आने के स्थान पर सौंदर्य को बिखरे देती है।

और उसे देखने में और आकर्षित और मनमोहक बनाता है।

इसमें खाने से लेकर टेंट की भी व्यवस्था की जाती है और बर्तन बर्तन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

त लंबे समय तक उसको टिकाऊ बनाती है।